तस्वीर हैं यहां पर।

पर अच्छे दामों में--

काम करते हुए मजदूर दिखाई--

रही हैं यह बस स्टैंड की--

टेबल दिखाई दे रही है।

टेबल वे बेड दिखाइ दे रहा है।

तथा यहां डॉक्टर यह बताते हैं।

लिए आप दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं।

बेकरी का सामान अच्छे दामों पर--